हेल्लो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इन बच्चियों ने काफ़ी अच्छा परफॉरमेंस किया था स्कूल में टॉप किया था।

ट्रेक्टर है| उसमें ये मशीन है| मशीन में ये धान रखी हुई है जिसको ये बोरियों में भर रहे हैं।

ये उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल है इसमें की ये मरीज के पैर में कुछ लग गई है चोट वगेरा जिसको जो ठीक कर रहा है दवा लगा कर ये इस पर लेटा हुआ है।

बाजू में उसके प्लेट भी दिख रहे हैं। शायद लंच किया था अभी। ये ठण्ड का समय है। इसलिए ये धूप में बैठे हैं और वहीं पढ़ रहे हैं।

वहाँ जेंट्स मास्क लगा के कुछ ले रहे हैं मेडिकल से और वो गेट है सामने।

बाजू में पेड़ वगेरा भी दिख रहे हैं। ये येलो कलर की बस है।